यह एक बस स्टैंड है और यह बस स्टैंड बहुत ही बड़ा है इस बस स्टैंड मे बहुत सारी बसे मिलती है यहाँ पे बहुत सारी यात्री आते है बस मे सफर करने के लिए |

ये एक स्ट्रेट फ़ूड की दुकान है और यहाँ पर स्ट्रेट फ़ूड मिलते है यहाँ पर बहुत दूर-दूर से लोग आते है स्ट्रेट फ़ूड खाने के लिए | स्ट्रेट फ़ूड खाने मे बहुत ही स्वादिष्ट लगते है।

एक शादी का कार्यकर्म है और यहां पे बहोत ही बड़ा पंडाल बनाया गया है और उसे अच्छी तरीके से सजाया गया है।

और यहां पे छोटी-बड़ी सभी प्रकार की गाड़ियां चलती है यहां पे बहुत सारे बसे भी चलती है बहोत सारे ट्रके भी चलती है और यह रोड काफी बिजी रोड है इस में लोग आते-जाते रहते हैं और इस रोड में एक्सीडेंट की संभावना बहुत ही कम होती है।

एक पार्किंग लॉट है और यहाँ पे गाड़ियों को पार्क किया जाता है। यहाँ पे बोहोत सारे गाड़ियों को पार्क किया जाता है। यहाँ पे ऑटो फोर-व्हीलर टू-वीलर सभी गाड़ियों को पार्क किया जाता है। यहाँ पे गाड़िये-गाड़ी बोहोत सुरक्षित रहती है यहाँ पे |

बहोत सारे लोग यहां पे आते हें मछलियां खरीदने और यहां पे मछलियां काफी सस्ते दामों में दी जाती है जिसे की लोग खरीदते हैं और मछलियां खाने में काफी स्वादिष्ठ होती है मछलियां खाना बहोत सारे लोग पसंद करते है और इसे खरीद के खाते हें।